मस्त लग रहा है एकदम बहुत सारे टेम्पू लगल है बहुत खुबसूरत है बहुत--

बहुत सुन्दर है बहुत खुबसूरत लग रहा है बहुत अच्छा है।

ब्लैक कलर का रि म ग्रील लगवल है और अच्छा लग रहा है और शीन बहुत खुबसूरत लग रहा है बहुत अच्छा बहुत क्यूट लग रहा है मस्त लग--

बहुत अच्छा लग रहा है बहुत सारे गाड़ी भी है और गेट कितना खुबसूरत है गेट पर लिखत भी कितना खुबसूरत है वाह बढ़िया लग रहा है देखने में बहुत खुबसूरत --